नीचे चप्पल पेहनी हुई है वो खडा है फोटो के लिए जैसे उसकी कोई फोटो खींच रहा हो सामने --

और स्टेज पे भी खाली है साइड पे चेयरे लगी हुईं हैं वो साइड पे देख रहे हैं ऊपर लाइटें लगी हुईं हैं बहोत सुंदरसा--

एक कमरा सा बना हुआ है जिसमें वाशिंग मशीन रखी है पीछे लोहे का स्टैंड लगा हुआ है जिसमें सामान रखा हुआ--

पंखा लगा हुआ है कच्चा प्लास्टर है दुकान टाइप का कुछ लग रहा है मशीनें है ऊपर काउंटर है काउंटर लोहे का है लोहे के ऊपर--

बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है जैसे कि होटल टाइप में पार्किंग लगी हो वैसे दिख रहा है गाड़ियां आ जा रही हैं।